कुछ लइका दौड़ ताडन सन एइजा सीढ़ी बनावल बा जौन काला रंग क ओकर ऊपरे पेपर कुछ जगह गिरल बाटे ओकरा पत्रा छावल बाटे पाया खड़ा बा।

सुरुज भगवान उगत हवे। लाल रंग के रोशनी धरती प आइल बा। हरा रंग क घास भी बाटे एजा बहुत जगह लइका कुछ खेलत हव सन।